यह एक मॉल है। इस मॉल में बहुत सारे कपड़े रखे गए हैं। और इस मॉल में बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है। यहां बहुत सारे चप्पल्स भी रखे हुए है। यह सिर्फ कपड़े औरतों के लिए है और यहां बहुत सारी औरत इन कपड़ो को खरीदने के लिए आती है।

यह एक नदी है। इस नदी में बहुत सारा पानी है। और यहाँ इस नदी के किनारे पर कुछ बनाया गया है। इस नदी में बहोत बोट भी लगी हुई है। और इस नदी के किनारे में बहोत बड़ी-बड़ी पेड़ लगी हुए है।

यह एक स्कूल है इस स्कूल में बहुत सारी बसे खड़ी हैं और इस स्कूल में बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं जो की यहाँ यह वर्क कर रही है इन सभी लड़कियों ने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है इधर एक लड़की खड़ी है जो उन सबको सिखा रही है ।